यह एक घर में बने गार्डन की फोटो है जहां पर हमें हरियाली दिखाई दे रही है पास में टाइल्स है।

यह एक दुकान है जिसका नाम श्रीमोली फैशन है यहां पर महिलाओं के और पुरुषों के जेवर जेवरात नेकलेस --

सोने के आर्टिफिशियल नेकलेस वगैरह हमें मिलते हैं और अदर चीज मेकअप वगैरह --

यह पिक्चर एक खुली जगह की है जहां में आसपास में हरियाली दिखाई दे रही है और एक कमरा --

यहां पे बहोत सारे लोग मैट बिछा के बैठे हुए हैं जो की योगा कर रहे हैं।

थ्री कलर तिरंगा कलर के बैलून से इसे सजाया गया है यहां पे ट्रॉफीज और अदर सामान--

किया गया है बैलून अलग अलग तरह के हैं रूम बहुत ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लाइक --

है जिसमें बहोत सारी मेंस एक गर्ल्स को प्राइस दे रहे हैं।

फल सब्जियां फ्रूट्स बेच रहे हैं कुछ यहां घूम रहे हैं यहां पे हमें बाइक दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर हमें बहोत सुंदर और अच्छी घूमने के लिए --

की लग रही है जहां कांच की बेंच और कांच की स्लाइड --

दिखा रही है जहां पे टिफिन और रोजमर्रा जैसे सामान उपलब्ध है।

एक मंदिर की लग रही है जहां एक बड़ा पेड़ पास में --

यह पिक्चर हमें गार्डन की लग रही है जहां --

स्कूल की है जहां टीचर खड़े हैं बच्चे--

यह हमें बड़े भव्य विशाल घर--